रूम दिख रही है इसमें लाइट दिख रही है एच.डी. की दिख रही है चॉकलेटी कलर खिड़की दिख रही है चॉकलेटी कलर शटर दिख रही है इसमें पिंक कलर के खम्बे --

उसमें आधा ऑरेंज कलर दिख और चॉकलेटी कलर दिख रहा है लाइट दिख रही है।